इसमें बहुत सारी कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

और प्लम जैसी बोहोत सारे फल रखे हुए है।

इसमें बहोत रंग के फूल लगे हुए हैं।

यह एक मोबाइल शॉप है।

ये इसमें वीवो ओप्पो के फोन भी है।

इसमें टी_वी वाशिंग मशीन फ्रिज जैसे कई सामान है इसमें--

ये एक नाव बहुत सारे रंग की है।